यह एक क्लब की फोटो है। यहाँ पर बहोत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं। यहाँ पर डिस्को लाइट लगी हुई है यहाँ पर लड़के भी खड़े हुए है यह डिस्को की फोटो है।

यहां पे बोहोत सारी कार खड़ी हुई है। यहाँ पे बोहोत सारे लोग हैं। यहाँ पे बोहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यह रेस्टोरेंट की फोटो है। यहाँ पे बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं। यहाँ पे एक कार खड़ी हुई हैं। यहाँ पे लोग आते हैं। ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है। यहाँ पे बोहोत सारे लोग आते हैं।

है यह गार्डन की फोटो है। यहाँ पर बोहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे बोहोत सारे लोग हैं यहाँ पे बोहोत स --

यहाँ अबसे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे दिख हुए रहै है। यहाँ पे बोहोत ज्यादा पेड पौधे लगे हुए है।

यह प्ले ग्राउंड की फोटो है। यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो खेल रहें हैं।